यहां ऊपर पंखे और लाइट्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक भी टीचर भी नहीं हैं इस रूम में।

यह रेलवे ट्रैक है यहां पर हमें--

पौधा लगा हुआ है ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा।

सजा हुआ लाल हरे पीले नीले बैंगनी कलर की मिनी लाइट्स से सजाई गई हैं।

के ढेर कुछ पत्थर्स बड़े बड़े और बारिश के कारण लगी हुई पानी--